सामने एक रोड दिखाई दे रही है रोड पे कुछ टेंपो खड़े हुए हैं।

सामने एक घर दिखाई दे रहा है घर के लॉक लगा हुआ है साइड मे एक छोटा दरवाजा दिखाई दे रहा है नई बिल्डिंग बनी --

पककर के बिठा है सामने भक्कर की बिठाई एक आदमी फोन पे बात कर रहा है ऊपर स्टार्स हैं डिज़ाइन बनी --

साइड में दुकान है वहां पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ सामने बैंक में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बाहर दो लोग खड़े --

सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है ऊपर पेड़ साइड में पेड़ पौधे दिखाई दें रहे है जिससे दो छोटे --

सामने दौरे दिखाई दे रहे है एदम रेगिस्तान सा लग रहा है पुराने फो झोपड़ियां दिखाई दे रही है एदम अच्छा बादल मौसम --

सामने एक आइसक्रीम की शॉप दिखाई दे रही है इस पे कूल एंड कूल लिखा हुआ है आइसक्रीम लिखा हुआ है सामने एक दीवार पे एक साइकील खड़ी --

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस पे लिखा है एस_के डिवाइस पी_जी बना है दिखाई दे रही है साइड में एक मथुरा मिष्ठान दुकान --

अलग-अलग ऊपर जजा रखी है कुछ बुके साइड मे रख रखी है आधी व्यवस्थित है आधी व्यवस्थित नहीं है बहोत सारी बुके अलग-अलग गार्ड से पड़ी हुई --

सामने एक जार्ज छात्रावास दिखाई दे रहा है ऊपर तीन खिड़की खिड़कियां दिखाई दे रही हैं ऊपर रेलिंग --

सामने एक जेंट्स पार्लर दिखाई दे रहा है कुछ लोग जो है कटिंग करवा रखे हैं अलग अलग जगह सीट्स पे बैठे हैं बहोत से --

कार के बॉक्स लगे हैं कार जेंट्स लिखे हुए हैं स्टॉप्स लिखा हुआ है उसमें सामान पड़ा है साइड में अलग अलग के गाड़ी --

सामने कुछ घर और शॉप दिखाई दे रही है वह रोड दिखाई दे रही है रोड के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई--

सामने बहुत से टमाटर दिखाई दे रहे हैं टोकरी के अंदर बहुत से टमाटर --